बोहत दूर से पाइपे दिखाई पड़ रही हैं। कुछ खजूर के पेड़ दिखाई पढ़ रहे हैं। कुछ अशोक के दिखाई पड़ रहे हैं और बोहोत सारी हुई हैं कुछ कलरफुल झूले भी लगे हुए हैं जैसे नील पीले लाल हरे गुलाल और तिरंगे कलर --

कुछ पोस्टर ऐसा जिस पर कुछ लिखा हुआ है और बहुत सारे पहाड़ ऊँचे ऊँचे हैं जिसे हरे भरे पेड़ पौधे बड़े कुछ छोटे कुछ देखने में अच्छे लग रहे है| एक बड़े पत्र के --

ये एक मंदिर है जिसमें बालाजी की मूर्ति रखी हुई है । ऊपर के ओर एक घंटा लगा हुआ है। काफी सारी डिज़ाइन भी की हुई है।

इसमें काफी सारे पहाड़ है जिसमें काफी सारे बड़े-बड़े जो है पेड़ पौधे हैं बोहोत सारा पानी आ रहा है और बोहोत सारी छोटी-छोटी घास है।

आश्रम विद्यालय है जिसमें बाहर साइड में एक चैनल लगा हुआ है | दो तीन पिलर लगे हुए हैं | बहुत सारे जाते हुए दिखाई पड़ रहें ऊपर --

ये एक ज़ूहु ऐसा लग रहा है जिसमें एक पेड़ जो है बड़े-बड़े पत्तों का छोटा- सा पेड़ लगा हुआ है। जिसमें काफी सारे दो तीन मगरमच्छ दिखाई पड़ रहे हैं और बगल में कुछ पानी भरा हुआ --

दूर से काफी पानी दिखाई पड़ रहा हैं और ढेर सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे पड़ रहे हैं बीच मे कुछ लाइटे भी दिखाई पड़ रही हैं और बहुत सारे पक्छी पानी मे दिखाई पड़ रहे हैं।

दरवाजे काफी सारे विंडो और काफी सारे खिड़किया बनी हुई है सामने की ओर की कपाट बंद है और साईड में कपाट खुले है जिसमे स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

ट्रांसफार्मर रखा है जो लोहे का है। आस पास कुछ तार लगे हुए है बहोत सारे पीछे साइड में पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।